सामने में मंदिर नजर आ रहा है मंदिर में हरे रंग का प्रयोग किया गया है लाल रंग का प्रयोग किया गया हुआ--